यहाँ पे एक रास्ता दिख रही है रोड बना हुआ है यह यहाँ पर भी एक पेट्रोल टंकी है कुछ लोग खड़े हुए हैंऔर बस खड़ी हुई है यहाँ पे सफेद कलर की--

--और एक ट्रक रखा हुआ है एक लड़का खड़ा हुआ है जो रेड कलर के कपड़े पहने है एक व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहने है एक लड़का दो लड़के खड़े हुए है ट्रेक्टर भी दिखाई दे रहा है।

किसी की मूर्ति रखी है तो और भी कुछ है एसा छोटा मोटा समान रखा हुआ है और ऊपर एक ब्लैक कलर का कुछ बोर्ड लगा है जिसमे कुछ नाम लिखा हुआ है।